के अंदर बहुत सारी बाइके और बहुत सारी भीड़ है और कुछ दुकानें हैं और जिनके ऊपर कपड़े--

और दो आदमी खड़े हैं और एक के हाथ में--

बहुत सारी बाइके खड़ी हुई है और एक गाड़ी भी खड़ी हुई है और आदमी--